इस तस्वीर में मुझे कुछ गाड़ी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ आलू बंडे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक सब्जियों का ठेला दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लोहे के खंबे दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे लाइन दिखाई दे रहीं हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक क्लास दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक पंखा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एल_आई_सी का बोर्ड दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक स्कैनर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे साईं बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है।